इस तस्वीर में आप एक रेस्टोरेंट देख पा रहे हैं।

देख सकते हैं कुछ गाड़ियां और एक एंबुलेंस लगी हुई है यह शिमला का बहुत ही फेमस --